चित्र का अनुसार यख मा जी तीन आदमी छन दिखेण लग्यां यख मा जी यू आदमी जु छन यू देखणा मा मिस्त्री कर छन लगण लग्यां।

चित्र का अनुसार यख मा जी कई सारा लोग छन दिखेण लग्यां यख सामने मा जी मंच कर छ दिखेण लग्युं देखण मा जी यख एक ब्यो कर छ लगण लग्युं यखम सोफा छा सोफा मा जी दूल्हा अर दुल्हन छन बैठ्यां।

सामणी मा जी दुई बस छन दिखेणी यख मा जी कुछ दुकान छन दिखेणी कई सारी बड़ी बड़ी इमारत छन कई सारा मकान छन यखम बिजली कु खम्बा छन बिजली का कई सारा तार।